तस्वीर के बाहर की तरफ देखा जा सकता है।

जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है यह एक कोचिंग क्लास का दृश्य है।

जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है एक आदमी अपने भगवान को पूज रहा है।

जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है यह एक रात का नजारा है और एक पार्क का जहां काफी हरे-भरे पेड़ और छोटे-छोटे पौधे लगे हैं।

और कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं यहां अंदर काफी लोग हैं।